ये सस्ता मॉल है इसमें कोई भी जाके कपड़ा खरीद सकता है बहुत-बहुत सुन्दर-सुन्दर सा कपड़ा इसमें दिखाई दे रहा है आप लोग भी जाकर के खरीदे और अपने परिवार को भी --

इसमें बल्व लगा हुआ है देखिये कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है |

ये मॉल है। ये देखिए मॉल में --

ये देखिये ये साज-बाज है।

और ढोलक भी बैग रखा हुआ है कितना अच्छा लग रहा --

ये देखिए ये जिम करने वाला है बच्चे बॉडी बनाते हैं पच्चीस साल के नीचे जो लड़के हैं वो अच्छा उनका बॉडी बन जाता है।

इसमें जो है सो इसमें बिरयानी है इसमें लेग पीस है और कितने अच्छे-अच्छे चावल दिखाई दे रहे है सफेद सफेद मसाला भी पूरा लगा हुआ है पूरा झकास है आप लोग खाइये देखिये।